वह पौधों को पानी देते हुए दिखाई दे रहे हैं।

नीचे बच्चा भी एक खेल रहा--

बहुत सारे पौधे उगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

नीली कार दिखाई दे रहा है।

और लोगों की बहोत भीड़ दिखाई दे रही है।

ऊपर बहुत लाइट्स लगी हुई हैं।

इसमें बहुत सारे अलग अलग रंगों के पर्दे टंगे हुए दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में हमें एक दुकान दिखाई दे रही है।

खिलौनो वाली ट्रेन नजर आ रही है।

इस शॉप के बाहर एक व्हाइट कलर की कार भी खड़ी है।

पलेस की बिल्डिंग हमें क्रीम कलर की दिखाई दे रही है।

उसका पानी हमे बहोत ही गंदा नजर आ रहा है।

यह दृश्य हमें एक रूम का--